यह एक नर मोर है यहां काफी खुशी से नाच रहा है।

रात का समय है तो लाइटिंग जो यहां पे की गई है बहुत अच्छी लग रही है।

कुछ आदमी अपने क्रॉस को हाथ में लेकर के खड़े हुए है बड़ा सा एक क्रॉस लमे लकड़ी का और दिखाई पड़ रहा है।

खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस लगी हुई है।

काफी खुश लग रहे हैं सारे हिरण जो है आसपास पेड़ वगैरह बना कर के लुगा कर के रखे--

यह एक बुक डिपो है यहां बहुत सारे पुस्तक कॉपियां जो है यहां पे रखे गए हैं।

बैकग्राउंड में हमें छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है।

सारी कुर्सियां जो है ब्लैक कलर की है टेबल भी ब्लैक कलर में है बहुत ही खूबसूरत यहाँ प लग --

तो ये अभी दोपहर का समय है धूप के हिसाब से--

सभी पूरी तरह से खाली है कुछ लोग यहां बैठे हुए है और हेडफोन लगाकर के काम कर रहे--

काफी अच्छे से इन सभी बच्चों को डांस सिखा रही है अभी रात का समय है यहां पे चारों तरफ जो है डांस क्लास में लाइटें जल रही है।

यह एक चांदी का शोरूम नजर आ रहा है हमें यहां पे बहोत सारी जो है।

अभी रात का समय है यहां पूरी तरह से अंधेला है और थोड़ी बहोत लाइट जो है--